ये रेस पिच है और इसपे कुछ बच्चे दौर रहे हैं और इसके आस पास घास उगे हुए हैं दीवाल भी घिरा हुआ है बाउंड्री किया हुआ--

तरबूज दिख रहा है और एक डलीय भी है आनारस और बहोत सारे फल भी दिख रहे इसमें जो रखा हुआ है।

यहां बहोत सारी लेडिस बैठे हुए हैं जैसे छठ का त्यौहार हो रहा है और बहोत सारे लेडिस एक साथ पूजा करने के लिए घाट पे पहुंचे हुए हैं और यहां पे--

यह एक बहुत यह एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें मशीन बहुत बड़ी बड़ी लगे हुए हैं।

और दो बस लगे हुए हैं जो बहोत पुराने खराब खटारा टाइप के दिख रहा हैं दिखने में लग रहा हैं।

सामने एक बैग का दुकान है जिसमें बहुत सारे बैग रखे हुए हैं जैसे लाल हरा ग्रीन और--

सामने बहोत बरा गार्डन दिख रहा है और बहोत सारे पेंर भी है और दुकान भी दिख रहा है घर भी सामने दिख रहा है।

और पानी है बहुत सारे नाव चल रहे हैं जैसे छोटे बड़े बड़े बड़े और पिलर भी दिखाई दे रहे हैं नाव में ये नदी में।